फिर वहां पर एक अंकल रहते हैं व्हाइट बाल्टी है।

यह एक शॉप है जिसमें तीन सौ पचहत्तर रुपया--

ब्लैक कलर की कुर्सी लगी हुई है रेड कलर की कपड़ा पहने हुए हैं।

जेंट्स हैं एक खंभा लगी हुई है।

रेड कलर की जमीन दिखाई दे रही है।

और एक यहां पर बिजली की खंबा खरी है।

एक ग्रीन कलर की सीरिया लगी हुई है एक बच्ची खरी एक बैठी हुई है।

दुकान है जिसमें एयरटेल फोर जी का पोस्टर लगा हुआ है उसके नीचे में--

सजाया गया है ग्रीन कलर के बैलून और वाइट कलर की बैलून से।